सामने की तरफ एक घर भी बना दिखाई दे रहा है घास उगती नजर आ रही है।

मीनाकारी इस दीवार पर की हुई है महल की दीवारें बहुत सुंदर लग रही है।

बाहर एक घर बना दिखाई दे रहा है नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा है बहुत सारी चीजों की पैकेट रखें --